हमें दिख रहा है यहां पर--

बहोत बड़ी चीज है।

इस पिक्चर में नजर आ रहा है यहां पर--

रहा है यहां पर।

इस फोटो में नजर आ रहा है यहां पर--

हमें देख रहा है।

नजर आ रहा है।

एक बहुत सारी चीजें हैं ये एक--

लोगों की भीड़ लगी है।